सामने एक बिल्डिंग दिखाई पड़ रही है जोकि दो खंडो में बनी हुई है यहाँ पे बहुत सारे खिड़की के आकार का बना हुआ है यहाँ ऊपर जाने के लिए जीने दी हुई है नीचे की फर्श ब्राउन कलर में दिखाई पड़ रही है साइड में एक खंभा जैसा दिखाई पड़ रहा है जोकि रेड कलर में दिखाई पड़ रहा है पीछे कुछ पेड़ लगे हुए हैं ।

यह किसी शॉप का पिक है यहाँ पे बहोत सारी पैकेटस रखी हुई है जो कि झुण्ड मे रखे हुए है पीछे कुछ बॉक्स रखे है जोकि ब्राउन कलर के दिखाई पढ़ रहे है पीछे कुछ रैक बनी हुई है वहाँ पर बहोत सारा सामान रखा हुआ है ऊपर कुछ लाइटे भी जल रही है नीचे फर्श का कलर ग्रे कलर में है।

इस पिक्चर में सामने लोहे की रेलिंग जैसा दिखाई पड़ रहा है जो कि ग्रे कलर में दिखाई पड़ रहा है पीछे बहुत सारा पानी भरा हुआ है जो कि ब्राउन कलर में दिख रहा है सामने कुछ घर जैसा दिखाई पड़ रहा है जो कि ब्राउन कलर में दिख रहा है पीछे कुछ पेड़ दिखाई पड़ रहा है जो कि ग्रीन कलर में दिख रहा है सामने आसमान का कलर रेड -ब्लू कलर में दिख रहा है।

इस छत का पीक है यहाँ पर बहुत सारी सरिया पड़ी हुए है कुछ सरिया लम्बी रखी हुई है कुछ खड़ी हुई हैं।

सामने बहुत सारे बांबू दिखाई पड़ रहे है नीचे फर्श का कलर ग्रे कलर और ग्रीन कलर में दिखाई दे रहा है यहाँ पर बहुत सारी गिट्टिया भी पड़ी हुई है पीछे कुछ लोहे के रॉड जैसे रखे हुए है पीछे खिड़की जैसा बना हुआ है पीछे की दीवार ग्रे कलर में दिखाई पड़ रही है।

--त सारी मछलियाँ दिखाई पड़ रही है जोकि वाइट कलर मे दिखाई पड़ रही है सामने बकेट दिखाई पड़ रही है जोकि ब्लू कलर में दिख रही हैं सामने बॉक्स ऐसा रखा हुआ है जिस पर टेप लगा हुआ है जो की ब्राउन कलर मैं दिखाई पड़ रहा हैं पीछे की दिवाल ब्राउन कलर में दिखाई पड़ रही है।

इस पिक्चर में सामने एक पानी दिखाई पड़ रहा है जो की ऑरेंज कलर में दिखाई पड़ रहा है सामने कुछ घास दिख रही है जो की ब्लैक कलर की दिख रही है कुछ पेड़ दिखाई पड रहे हैं जो की ब्लैक कलर में दिख रहे है सामने कुछ बिजली का खंबा दिख रहा है उसमें कुछ तार भी दिखाई पड़ रही है।

यहाँ सामने एक चिड़िया दिखाई पड़ रही हैं जिसका कलर ब्लैक कलर में दिखाई पड़ रही है उसके पंजे येल्लो कलर दिखाई पड़ रहे हैं उसकी चोंच रेड कलर में दिखाई पड़ रही हैं नीचे कुछ पानी भरा हुआ हैं जो की ब्लू कलर में दिखाई पड़ रहा है साइड में बहुत सारी घाँस दिखाई पड़ रही हैं जो ग्रीन कलर और ब्राउन कलर में दिखाई पढ़ रही हैं।

सामने एक बेड दिखाई पड़ रहा है जिसमें व्हाइट कलर की चादर पड़ी हुई हैसामने परदे लगे हैंहुए हैं जो की ग्रे कलर में दिखाई पड़ रहे हैं नीचे की फर्श ब्राउन कलर में दिखाई पड़ रहे हैं पीछे दीवार का कलर वाइट कलर में दिख रहा है सामने एक अलमारी जैसा बना हुआ है सामने एक डस्टबिन दिखाई पड़ रहा है जिसमें ब्लैक कलर की पन्नी दिखाई--

बड़ा सा ग्राउंड दिखाई पड़ रहा हैयहाँ पे बहोत सी कार खड़ी हुई हैं जो की रेड कलर वाइट कलर में दिखाई पड़ रहा हैं साइड में एक पर्दा बंधा हुआ हैजो कि रेड और वाइट कलर में दिख रहा है पीछे एक शैडो ब्लू कलर का दिखाई पड़ रहा हैपीछे बहुत से पेड़ भी दिखाई पड़ रहे हैंजो कि ग्रीन रंग के दिख रहे है सामने एक बड़ा सा पेड़ दिख रहा हैं।